बड़ी-सी एक रस्सी को पकड़ कर --

और य आस --

इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि यह एक ग्रामीण इलाके का छोटा-सा बजार है।

अ हरे-भरे पेड़ भी हैं और कुछ --

और जो बाहर से रे लाल कलर का है और बाहर लाइटिंग --

और यहाँ पर बहोत ही हरियाली --

नदी है जहां पे कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं।

इस चित्र में यह दर्शाया गया है कि यह एक --

यहाँ पर ऐसी बहोत सी चीजे हैं जो हम अपने रेगुलर यूज में लाते हैं।